इस इमेज मे हमे कुछ पक्षी नज़र आ रहे हैं।

लाइट दिख रहा है। पेड़ दिख रहे हैं। आसमान दिख रहा है।

जिसपे एक पीले कलर का अम्ब्रेला दिख रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कुछ गमले टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसने कैप पहना हुआ है उसके हाथ मे मोबाइल दिख रहा है।

एक स्टेज दिख रहा है।

काँच के गेट नज़र आ रहे है| आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें एक बस्तर डेयरी फॉर्म --

एक सरला क्लीनिक डॉक्टर अरुण कुमार यादव का क्लीनिक नज़र आ रहा है।

दो लोग बाइक पर बैठकर जाते हुए दिख रहे है।

इस इमेज मे हमे एक बस नज़र आ रही है।

एक और मूर्ति नजर आ रही है जो घोड़े पर बैठी हुई दिख रही है।

एक फुटा हुआ लोहे का तसला नज़र आ रहा है।

एक घर नज़र आ रहा है।